सामने दीवार पे कुछ लिखा हुआ है बिजली का बड़ा सा खंभा लगा है।

एक टेबल है टेबल के ऊपर सामान रखा है।

खाने के लिए काउंटर सजाया गया है जिसके ऊपर बर्तन रखे हैं और खाने के लिए--

दूसरी दुकान का भी शटर गिरा हुआ है उसके सामने ठेला है।

टेबल के ऊपर घर को सजाने का सामान रखा है।

बस को फूलों से सजाया गया है। बस के सामने एक आदमी खड़ा हैं।

दिवाल में एक केबिन बना हुआ है जिसके अंदर--

ऊपर लाइट से एक और पोल को सजाया गया है।

ग्राउंड में हरी कारपेट बिछी हुई है।

मैदान के एक कोने में हरे भरे पेड़ है।

रैक में समान को अलग अलग करके लगाया गया--

बाहर एक गमला रखा है एक पाइप पड़ा हुआ है हाथ धोने के लिए वॉशबेसिन बना हैं।

बाहर टी शर्ट पहने एक आदमी बैठा है।

नीचे रेलवे ट्रैक है ट्रैक एकदम खाली है।